ये किसी स्कूल या किसी कॉलेज का पाथवे है।

ये किसी बैंकेट हॉल के बाहर का एग्जिट है रोड के पास--

यहां पे जो रास्ता है वो काफी पुराना दिख रहा है जैसे पत्थरों का बना हुआ रास्ता है।

और टीचर की ड्रेसिंग सेंस भी काफी अच्छी--

यह एक मार्केट का फोटो है अ जैसे कि दिख रहा है दो-दो दुकान है यहां पे--

कंपोनेंट पड़े हैं बहुत सारे--